एयरपोर्ट है हवाई जहाज है नीला सफ़ेद कलर है।

पुल है पुल पर लोगो की भीड़ है बहुत सारे लोग है उनके हाथों में हरा झंडा है।

रेस्टोरेंट बाहर सफेद काले बलून से सजा है तोरण लटक रहे है।

गाड़ियाँ चल रही है बिल्डिंग बन रही है लोहे की सलाखे लगी है।

लोग हैं पीछे के गेट से ऊपर जा रहे हैं पौधे लगे हैं पेड़ लगे हैं बोर्ड लगा है।

गार्डन है। पेड़-पौधे लगे हुए है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग की छत से नीचे दिखाने वाला नजारा --

बड़े पत्थर है पाइप है।